ये किसी दाईनिग टेबल का फोटो लगा रहा है जिसमे बहुत बढ़िया फ़ूड रखा हुआ है उस पर सूस भी डाला हुआ है एक बरतन भी रखा हुआ है उसमे चम्मच भी डली हुई है और उसमे कुछ खाने कि चीज राखी हुई है एक बगल में भीं चम्मच--

रखी हुई है निचे कि पिलाई भी बहुत बढ़िया लग रही है और पिछे कुछ गुलाबी एंड काले कलर का भी कुछ दिख रहा है।

ये किसी पार्क का फोटो है इसमे बड़े बड़े कुछ पेड़ लगे हुए है एक नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है एक पूल टाइप का बना पेड़ का इमेज़ है जो येलो कलर का दिखाई दे रहा--

माताएं दिखाई दे रही है जो हाथ मे तलवार पकड़ी हुई है एक घंटी भी रखी है दो सिंघासन में भी रखे है और माता ने चुन्नी ओढ़ी हुई है और दीपक भी रखा हुआ है कुछ फूल भी रखे--

ये फोटो किसी उम- कपड़े वाली सेल का लग रहा है जो बहुत ही बढ़िया है ऊपर दो डब्बे भी है दो तीन डब्बे भी रखे हुए है एक येल्लो कलर का एक ब्राउन कलर का और एक ऑरेंज कलर का --